यह एक किसी डांस प्रैक्टिस की तस्वीर हैजहां पर छोटी-छोटी लड़किया डांस करती हुई-

नजर आ रही है और यहां पर पीछे की दीवार में बैलून लगे हुए हैं जिनका कलर व्हाइट एंड येलो है ऊपर घड़ी लगी हुई है और बल्ब लग--

यह एक शाम कि तस्वीर है जहाँ पर काफी सारी साइकिल और काफी सारे व्यक्ति --

स्कूल की तस्वीर है और जहा काफी सारे बच्चे मौजूद है और यहाँ पंखा नज़र आ रहा है और छद के ऊपर एक बल्ब नजर आ रहा है गाँधी की मूर्ती --

ये वाइट ग्रीन और ऑरेंज बलून से इसे सजाया गया ।